एक आदमी बैठा हुआ है जो येल्लो कलर की टी- शर्ट पहने हुये है उसमें केले के पत्ते भी लगे हुए हैं।

हमे यहाँ रेत भी दिख रही है और पेड़ॆ भी दिख रहे हैं।

इस इमेज में हमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है एक आदमी एक पुल पर खड़ा हुआ है और वह पानी को देख रहा है ये सफेद कलर की टोपी लगा हुए है जूते पहने हुए हे वॉच पहने हुए हे।

--चला रहा है और सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। .

एक अादमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे पर्दे दिखाई दे रहे है पर्दे ब्लू कलर के--।

और एक कुछ नाँव सी है जिसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए है हमें--

-- दिखाई दे रही है ऊपर झूमर लगे हुए हैं और यहाँ लाइटिंग भी लगी हुुई हमें दिखाई दे रही है।